लकड़ी से कुछ घेरा गया है पीछे से वृक्ष दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े खुला आसमान भी है फिर घर दिखाई दे रहा है।

एक आदमी डिटेन के अंदर तार काट रहा है एक आदमी कही जा रहा है जो आदमी टोपी पहंना हुआ है एक लड़का मास्क पहना है हाथ में ग्लव्स है।

वो हाथ से कुछ काट रहा है उसकी फोटो ले रहा है जीन्स पहने है और जुते भी पहने है ब्लू ब्लू कुछ दिखाई दे रहा--

आदमी है जो मास्क पहना है वहाँ तीन-तीन ऑक्सीजन सिलिंडर है कुछ बडा है दो कूछ छोटे-छोटे है रूम में रखे हुए है वो और यहाँ पे पर्दा दिखाई दे रहा है वाइट कलर का दीवाल दिखाई दे रही है।

चढ़े हुए है और यहाँ पे औरत पुरुष भी है बच्चे भी है और कुछ पुरुष और महिलाये बात कर रही है पानी बहोत लहर अ--

पहाड़ दिखाई दे रही है भगवान को बनाया गया है आदमी शर्ट जीन्स पहना है और चप्पल पहना है पंडित जी हाथ में मोबाइल है।

लिखा हुआ है सुधा पार्लर और सारे आदमी है जो कुछ खरीद रहे है लेकिन यहाँ से।

एक एक मैडम के पास पर्स है यहाँ कुछ बनाया गया है पीछे काले कलर के कपड़े लटकाए गए है ऊपर कुछ लिखा गया है।

बहुत सारा आदमी बहुत सारा आदमी और सूरज भी दिखाई दे रहा है खुला आसमान है यहाँ पे सारे महिलाए नीचे बेठे हुए हुए है बात कर रहे है यहाँ पे बहुत सारे आदमी--

चार लड़की है अपनी ड्रॉइंग दिखा रही है और पो - पौधे लगे हुए है क्लासरूम दिखाई दे रहे है धूप है और सफ़ेद् छाया दिखाई दे रही है।

और दो तीन बाइक लगे हुए हैं बाहर में आदमी है वृक्ष है वृक्ष में का लाइट लगा हुआ है बहुत सारे लाइट लगाया है और और स्टार है।

--के ऊपर गया है और रात हो रही है और गाडी है स्कूटी है । आदमी कहीं जा रहा है अंदर में एक रास्ता है।